बहोत बड़ा प्ले ग्राउंड दीख--

है इसमें बहोत सारे लोग नज़र आ रहे--

मुझे एक बहुत ज्यादा बड़ा--

केबिन में बहुत सारी चेयर --

मुझे एक एक्स रे हाउस दिखाई दे रहा--

बहोत बड़ी होटल दिखाई दे--

किचन के दुकान दिखाई दे--

बहोत ही ज़्यादा अच्छी लग--